यहां एक लड़का खड़ा हुआ है।

और नीचे यहां पर एक टीन रखी हुई है।

टेबल सफेद रंग का दिख रहा है और बगल में कपड़े लगे हुए हैं।

एक लड़की भी जा रही है और यहां--

और सामने झील से पानी आ रहा है छोटी-छोटी चट्टानें बनी हुई हैं।

नीचे घास भी लगी हुई है और--

और यहां एक कांच का जार भी लगा हुआ है।

साथ में यहां मिर्च भी रखी हुई है और नीचे अखबार बिछाया हुआ है।

और साथ ही यहां नीचे एक स्टूल रखा हुआ है।

सीढ़ियां लगी हुई है और अंदर पांच सात लोग खड़े हुए हैं।

और साथ में यहां लड़के का बैग भी रखा हुआ है।

मंदिर भी बना हुआ है और वो रखा हुआ है।